जहां पे आसमान दिख रहा है आसमान में बादल दिख रहे हैं।

और वॉल पे बहोत सारे पिक्चर दिख रहे हैं।

और ये एक बच्चा भी दिख रहा है औरतों ने साड़ी पहनी हुई है।

और दीवार भी दिख रही है दीवार में चित्र बना हुआ है ट्यूबलाइट्स दिख रही हैं।

और यहां पे और भी बहोत सारा सामान दिख रहा हैं।

शोरूम में बहोत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान दिखाई दे रहा हैं।

घर दिख रहा है घर के ऊपर सोलर सिस्टम दिख रहा है आसमान दिख रहा है।

और एक बच्चा दिख रहा है जिसने व्हाइट प्रिंट शर्ट पहनी है और ब्लू पैंट पहन रखी है और बहुत सारी बिजली की तारे दिख रही हैं।